सामने ग्राउंड दिख रहा है एक पत्थर दिख रहा है ग्रे कलर का--

और ग्रीन कलर का और ऊँह महरून कलर का --

और एक पिक अप दिख रही है और सामने दिवार दिख रही है ग्रे कलर का पेंट किया हुआ।

एक टेबिल रखा हुआ दिख रहा है बहुत सारे लोग बैठे हुए दिख रहे है मच्छी रखी हुई दिख रही है।

सामने रोड दिख रही है महरून कलर की ट्रांसफार्मर दिख रहा है।

छोटे-छोटे पौधे दिख रहे है एक केले का पेड़ दिख रहा है सामने--

सामने बहुत बड़ा ग्राउंड दिख रहा है एक ब्लैक कलर की बेलन रखी हुए दिख रही है।

फिर एक हाल दिख रहा है फर्श अ दिख रहा है ग्रीन कलर का और पिंक कलर का हल्का--

सामने फर्श दिख रही है ग्रे कलर का जिसमे हल्के से घास उगे हुए दिख रहै है।

सामने ब्लैक कलर का गेट लगा हुआ है लकड़ी से बना दिवार दिख रहा है वाइट कलर का।

दिवार दिख रहा है ग्रीन कलर का और पिंच कलर का खिड़की दिख रही है।

लाइटें लगी हुए दिख रही है और एमपि लिखा हुआ --

दिवार दिख रही है वाइट कलर का पेंट किया हुआ वाइट कलर का शटर दिख रहा है पोस्टर लगा हुआ है।